बेंगन आलू ककड़ी अलग अलग यहाँ पे शेतकरी अच्छी अच्छी सब्जियां बेचने आते हैं अलग अलग रेट से देते हैं।

यह एक डेकोरेशन है लोग अपनी शादियों में रिसेप्शन में कोई पार्टी में इसको डेकोर करते हैं अलग अलग लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं डेकोरेशन के लिए लोग आते हैं अलग अलग--

यह एक मुसलमान लोगों का दरगाह है यहाँ पे मुसलमान लोग आते हैं भक्ति करने के लिए लेकिन यहाँ पे औरतों को--

जिस की जिसका नाम है डी_एन_आर डी_एन_आर के अलग अलग ब्रांचेस हैं वो यवतमाल भी जाती हैं चंद्रपुर भी जाती हैं इनका अलग अलग टाइम होता है।

सीनियर सिटीजन रहते हैं यहाँ पे बॅचलर रहते हैं।